यह एक चित्र है यह चित्र किसी स्थान का है।

यह एक चित्र है यह चित्र किसी दुकान का है।

इसमें एक पलंग है और एक चित्र में एक शीशा है।

और कुछ और से बैठी हैं इस चित्र में दो धातु के बर्तन है और कुछ फूल है।

इस चित्र में शैंपू तथा क्रीम लटक रही है।

यह चित्र यह चित्र किसी जिम का है।

और इनके गले में एक एक साफा है जिनका रंग पीला है।